हमे यहाँ पर बोरिया दिख रही हैं जो की वाइट कलर की हैं हमे यहाँ पर बहुत सारे डिब्बे दिख रहे हैं जो की येल्लो कलर के रेड कलर के हैं और एक बोरी दिख--

हमे बहुत बड़े मकान दिख रहे है हमे बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे है पौधे दिख रहे है गमले दिख रहे है बहुत सारे स्टैटूज़ दिख रहे है।

हमे यहाँ पर एक किला दिखाई दे रहा है। जो की पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर हमे सीढ़िया दिखाई दे रही है बहुत लंबी वाली।

हमे ये सब बहुत गुलाबी-गुलाबी सा लग रहा है। हमे यहा पर नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है।